एक व्यक्ति रास्ते में खड़े हुए हाथ उठाया है एक सामने ऑटो वो--

ऊपर लाइटें जल रहीं हैं बहोत सारे लोग नीचे खड़े हुए हैं।

बाजू में एक दरवाजा एक खिड़की दिख रही है नीचे एक स्कूटी खड़ी हुई है।

व्यक्ति के मुंह में कुछ लगा हुआ है व्यक्ति का मुंह नहीं दिख रहा है बहोत सारी काउंटर बने हुए हैं।

एक गाड़ी खड़ी है गाड़ी के बाजू से एक व्यक्ति खड़ा है।

पोस्टर लगे हुए हैं दीवार पे।

पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

बोर्ड के ऊपर स्पेशल क्लास लिखा हुआ है।

एक ट्रक भी खच खड़ा हुआ है जा रहा है एक ट्रक आ रहा है।